शोरूम की फोटो है जो की एम् जी रोड पे है।

ये पेप फोटो किसी स्टेशनरी स्टोर का है जिसका नाम आशीष पेपर मार्ट है।

जिसमें अभी कोई आदमी नहीं दिख रहा है आगे तरफ दो गाड़ियाँ खड़ी हैं ।